लाल किला के ऊपर बोर्ड पर से ऑटो पार्ट्स लिखा हुआ है।

वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए भी हैं |

यहां पे बहुत सी झोपड़िया बनी हुई है।

इ बरगद की तस्वीर भी लगी हुई है |

यहाँ पर एक तेजा बुक स्टॉल नाम की दुकान है।

खेत में भीड़ की परछाई भी दिखाई दे रही है।